चौराहा लग रहा है इस चौराहा पे बहुत सारी टमटमें निकल रही हैं कुछ टेम्पो भी हैं कुछ साइकिल से भी लोग निकल रहें हैं।